किल्ले की एक बगल में एक बड़ासा ऊंचासा हरा-बरा सा पेड़ दिखाई दे रहा है।

पहाड़ो के ऊपर हरी-भरी घास और छोटे-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए है।

पहाड़ के एक तरफ उपर के हिस्से मे कुछ हरी भरी सी घाँस लगी हुई है।

बड़ा सा नीला सा आसमान दिखाई दे रहा है बड़े-बड़े से हरे-भरे से पेड़ पौधे लगे हुए हैं कहीं-कहीं पर कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं।

उस किल्ले की एक तरफ के दीवार पर कही-कही पर हरी-भरी सी घास लगी है।

किसी कांच की बिल्डिंग बनी हुई है उस बिल्डिंग के गेट के पास बड़े बड़े से कांच लगे हुए है।

कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं उस सब्जी की दुकान के बगल में एक साड़ी की दुकान है उस दुकान के बाहर कुछ साड़ियां टंगी हुई है।

बड़ासा पानी का समंदर है समंदर के किनारों से थोड़ी दूर बड़ी किसी लोहेकी बाउंड्री है।

कुछ मोटर सायकल खडी हुई है एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है और मोटर सायकलों के पास भी कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है।